और ये फर्श बहुत सारे पत्थर टूटे हुए हैं।

यहाँ एक खाली सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के ऊपर एक खंभा लगा हुआ है। एक आदमी बाइक से जा रहा है। खड़क-सड़क के दोनों बाजू में पेड़ लगे दे दिए हुए है।

गए आगे से गाड़ी अ रही है और गाड़ी ये पुल जैसे दिखाई दे रहा है

यहाँ दो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने कुछ बाइक रखी हुई है साईकल है ।

ये एक शेड के नीचे है शेड का कलर ब्लैक और ग्रीन है और ये यहाँ घास खा घास खा रहे है।

ये एक किराना दुकान हे यहां पे कुछ लोग काम कर रहे हे एक स्टूल रखा हुआ हे टेबल पे एक थेली रखी हुई हे जिसका कलर रेड हे ।

यहा एक बिल्डिंग हे बिल्डिंग के ऊपर नीले कलर का शेड लगा हुआ हे यहां पे दो खंभे हे जिसमे लाइट लगी हुई हे ।